इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है सामने एक बोर्ड टांगा गया है जिसपे लिखा हुआ है पोल्ट्री फॉर्म ललगड़ा।

पीछे डेकोरेशन किया गया है फूल पत्तों से फूल का कलर जो है पिंक और वाइट कलर में है।

दिन का समय हो रहा है और जोड़ी आ रहा।

कुछ रंगीन बोतल काउंटर पर रखी हुई है।

यह तस्वीर एक दुकान की है जहां विभिन्न प्रकार की वस्तुओं वस्तुएं शेल्फों पर सजी हुई है।

हर तरह का यहां पे बैग है हर कलर में।

जिमनास्टिक बॉय का बोर्ड भी लाइट जल रही है।

सामने एक लड़की ट्राउजर टी शर्ट पहनी है और दो लोग मिलके उसको योगा करवा रहे हैं।

तस्वीर में एच_डी_एफ_सी बैंक का सीन है।